यहाँ पर एक मेला का आयोजित किया गया है यह एक बहोत ही बड़ा मेला है इस मेला में बहोत सारी चीज़ें मिलती है इसके अंदर द बहोत सारे सामाने आपको देखने को मिल जाती है और इसका फ्रंट साइड को बहोत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।

यह एक नया सैलून है और इस सैलून का नाम हेयर एक्सपर्ट प्रोफैशनल सैलून है यह सैलून हाल ही में खोला गया है इस सैलून का आज उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर पाँच छे आदमियां भी नजर आ रहे हैं।

यह एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग और इस बिल्डिंग को बहुत वर्षों पहले बनाई गई है ।

यह एक बहुत ही बड़ा महाविद्यालय है। इस विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर एइथ से लेके टेंथ तक पढ़ाई की जाती है । इस विधालय में मिनिमम हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।